का पता है और जो केले का पत्ता वगैरा होता है वो है और नीम का पेड़ बरगद का पेड़ कई सारे पेड़ लगे हुए है और यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि इनके पत्ते भी मील जाते है।

इस चित्र में हम देख सकते है की यहाँ हरा भरा सा बाग मौजूद नजर आ रहा है जो की हम गार्डेन कहते है कीस तरह से इसे सजाया और सवारा गया है हम देख सकते है की कैसे ए बक्से बक्से जैसा नजर आ रहा है दरमियान मे और छोटा सा पानी का--

इस चित्र मे हम देख सकते है की हमे कही सारे कारखा ने और पुराने बिल्डिंगे नजर आ रही है। हम देख सकते है की यहा पर छोटा सा शेड बनाया गया है पार्किंग के लिए यहा पर कही सारे बायसाइकल्स वगेरा रूखी हुई है बड़ी-बड़ी कारे रुकी हुई --

इस चित्र में देख सकते है की ये एक एंपायर जिम है। जहाँ पर कई सारे लोग जिम में ज्यादा से ज्यादा मशीनों के द्वारा अपने शरीर को कसरत करवाने के लिए आते है जैसे की हम देख सकते है।

यहाँ मसल्स वेगेरा पह यहाँ पर बनाने हो तो यहाँ पर अह मशीनों का इस्तेमाल करके रोजाना एक महीने या छे महीने में अह फरक बनाए जा सकता है।